यहां आप देख सकते हैं।

जो की बीच के पिलर पे नर्सरी हाउस लिखा भी हुआ है।

और चारों तरफ छोटे मोटे पेड़ पौधे रखे गए हैं गमले में।

यह एक शानदार होटल या बेकरी है।

और नीचे जमीन ग्रेफाइट टाइल्स है।

उसके आगे बहुत सारे ड्रिंक्स है।

सीलिंग व्हाइट कलर का है।

आप देखने में देख सकते--

यहां एक कतार में बहुत सारी कुर्सियां लगाई हुए हैं एक ही रंग सफेद कलर की--